यहाँ पर एक साइकिल रखी हुई है और यहाँ पर बड़ा सा मैदान है| यहाँ कुछ लोग बेठे हुये हैं| मैदान में कई --

यहाँ पर दो केक रखे हुए हैं एक पिंक कलर एक रेड कलर पे यहाँ कुछ पन्निया पड़ी हुई हैं दूध कि कुछ कुछ केक बनाने के लिए।

कुछ गाड़ियों से बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर एक आंटी और अंकल खड़े हुऐ हैं जिनके आंटी के हाथ में एक बॉल रखी हुई है और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है और कई सारे लोग खड़े हुऐ हैं उधर भी साइड में --

पुल बने हुए हैं दो लाइट के और यहाँ पर एक गेट है सामने यहाँ पर कुछ दरवाजे हैं पर्दे लगे हुए हैं।